गेट बहोत ज्यादा डिजाइनर समझ में आ रहे हैं सामने एक पोर्च बना हुए है।

यह एक हाउस टैग का है जहां पर वाइट कलर के टेबल लगे हैं कुछ कलर कलर के--